ग्राउंड में नीचे छोटे छोटे घास लगी हुई है।

यहां तिरंगे कलर का बलून भी लगा हुआ है।

रोड के किनारे बाइक पार्क की गई है।

इसके बगल में भी बहुत सारे लोहे के वस्तुएँ रखे गए हैं।

लोहे के गेट के ऊपर लोहरदगा ग्रामीण लिखा हुआ है।

दुकान के आगे एक रोड गुजरी हुई है।

बिल्डिंग के पीछे भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यह एक रोड का दृश्य है रोड पर बहुत सारे व्यक्ति चल रहे हैं।

रोड के किनारे बड़ी बड़ी पोल भी बनी हुई है।

अंदर की दीवार भी आसमानी कलर की है।

यहां एक बड़ा सा टेबल रखा हुआ है।

बहोत सारे बोरे में अनाज रखा हुआ है।